और इस तस्वीर में तीन चार लेडिज भी नजर आ रही है।

और इसकी दुकान पे गोभी मिर्च टमाटर गाजर--

इस तस्वीर में एक गाड़ी दिखाई गई है इस गाड़ी का बोनट खोल रखा है।

और इस गाड़ी के सामने भी एक गाड़ी खुली हुई है।